बच्चे लोग का शीशी है.

और इसमें सायद विवाह करने वाले लोग आएंगे.

और अगल-बगल पहाड़ है.

दुकान के सामने एक मोटर साईकिल खड़ी है।

वो शटर खुला दिख रहा है।

दोनो साइड से रैक है.

और इलेक्ट्रॉनिक का अनेक सामान दिख रहा--

पुलिस खड़े हे और बोहोत से लोग वहां पे खड़े--

बहुत तरह का बल्ब जल रहा है.

सायद लगता हे पुल बनाने अ पुल बनाने वाला एक मशीन दिख रहा हे.

और इसके आगे शायद ग्राहक लोग खड़े हैं सामान खरीदने के लिए।

हाॅल के अंदर अनेक खिड़कियां है.

इस मंदिर के ऊपर गुंबज है.

गुम्बज के ऊपर एक माइक बना हुआ हैं.

और इस दुकान में कुरकुरा है शैंपूल है.